यहाँ पे बैलून्स लगे हुए है और वाइट कलर रेड कलर येलो कलर ब्लू कलर और ऊपर फैन भी लगा हुआ है और लाइट्स भी लगे हुए है यहाँ पे पीछे बैठने के लिए भी जगेह--

यहाँ पे सामने कुर्सियाँ रखी हुई है ब्लैक कलर में और एक शोफा भी रखा है ब्लैक कलर में सामने टेबिल भी रखी हुई है।

और यहाँ पे रेत पड़ी है गिट्टी पड़ी है और यहाँ पर सामने डस्टबिन रखा है एक दुकान भी है यहाँ पर शटर लगी हुई है।